नवीन कर्मचारी जी ने लिखा है येलो कलर का बोर्ड है ब्राउन कलर की बाउंड्री है।

नीचे मिट्टी का प्लेस बना हुआ है और ग्रे कलर की मिट्टी है। भोले शंकर की फोटो है वाइट कलर की। साथ में बिजली का खंबा है।

अ उस साइड में गैलरी भी वाइट कलर की है।

ब्लू कलर की जींस है येलो कलर की टोपी है ब्लू पानी है।

ये जो कपल आ रखे हैं वो उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

और कैप पहनी हुई हैं येलो कलर की साड़ी पहन रखी हैं मैम ने--

ग्रीन एंड व्हाइट कलर का पानी नजर आ रहा है पत्थर है ब्राउन कलर का वाइट कलर की टी शर्ट और चेक निक्कर पहन रखी है ग्रीन कलर के पहाड़ हैं।

ब्राउन एंड ग्रीन कलर पहाड़ हैं वेदर नजर आ रहा--

ये एक पेट्रोल पंप हैं इसने टाइल लगा रखी है ग्रे ऑरेंज एंड गाजरी सेट की लगा रखी हैं।

ये एक विजय लक्ष्मी ग्राउंड है ग्रीन विजय लक्ष्मी ग्रीन इन्होने बहोत अच्छा इंटीरियर कर रखा है रेड कलर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है।

यह करीमनानगर में है डेयरी करीमनानगर डेयरी डिपार्टमेंट डेयरी पार्लर है।

ब्लैक शीशे वाइट सिल्वर मे और कोल्ड ड्रिंक्स की ये एक फ्रिज है।

ये एक मैट की दुकान है रेड कलर का मैट है।

दो लेडीज नजर आ रही है मुझे व्हाइट कलर की इन्होंने साड़ी बांध रखी है रेड कलर लीवाइस यहां बुके पड़ा है एक फ्लॉवर रेड ग्रे --

साइड में एक फ्लॉवर का है सीनरी है ग्रीन है।

ये गोडाउन है जिसमें गत्ते का समान पड़ा है काफी डिब्बे पड़े हैं।

ये एक प्लेस्कूल है उनका किचन है स्टील के उनके वेरिंग लगे है ए_सी लगा हुआ है ग्रीन कलर का फ्रिज है।

रेड कलर का डस्टबिन है। एक कांटा बना हुआ है।

ये एक मशीन की दुकान है जिसमें लगा ब्लू कलर के अह स्काई ब्लू कलर की मशीन है जिसमें दो जेंट्स हैं पिंक कलर की टोपी --